यह सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है और वहां कुछ लाइटिंग से हां लाइटिंग से सजाई गई है।

नीचे पानी की तरह ही और ऊपर आसमान सफेद नज़र आसमान साफ दिख रहा है एक व्यक्ति साइड में खड़े हुई है जो चश्मा लगाए हुए हैं और साइड में कुछ हरी घा --

और सामने एक अ- व्यक्ति बैठे हुए है जिसके सामने राइट साइड में लाल कलर के बैलून बहुत से ऊपर की ओर बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये दिन का समय है आसमा--

अंदर एक बहुत बड़ा कमरा दिखाइ दे रहा है बाहार मै एक एक उसमें एक व्यक्ति खड़े दिख रहा है।